यह चित्र किसी खेल के मेदान का है और रात्री का समय दिखाई दे रहा है लाइटे जल रही है खेल के मैदान मे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं।

वो सामने एक घर है और मोटेरकीकल खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और पेड़ पौधे लगे हुए है।

ये चित्र किसी खेल के मैदान का है क्योंकि रात का समय दिखाई दे रहा है लाइटे दिखाई दे रही है।

और होटल में सामने एक टी_वी भी रखा हुआ हैऔर मेज पर कुछ पानी की बोतलें और ग्लास रखे हुए हैं।

यह चित्र किसी होटल का है जो कि सामने जिसका नाम जायका फेमली होस्ट होटल है।

ये चित्र किसी होटल का है जो की सामने मोमो फ्रेंड दीवार पर लिखा हुआ है कुछ मेज कुरसिया भी लागि हुई दिखाई दे रही है और कुछ टेबल भी लगे हुए सामने दिखाई दे रहे है।